यह एक स्टेशनरी की दुकान है दुकान में बैठा हुआ आदमी ग्राहक का इन्तेजार कर रहा है।

यह एक स्टेशनरी की दुकान है यहाँ पर ग्राहक खड़ा हुआ हैं।

ये है होली खेलने के बाद का दृृश्य है।

यह एक पार्क की फोटो है जिसमें झुला लगा हुआ है ।